एक टेबल्स में खरीदी हो रही है और एक पे अंकल बैठे हुए हैं।

जिसने बहोत सारे फोटोज है ऊपर देवी माता के शंकर भगवान के पार्वती भगवान के।

और पोछा भी रखा गया हैं लोगों को बैठने के लिए कार्पेट रखा गया है।

दरगाह है दरगाह में गेट लगे हुए हैं गेट का कलर पर्पल कलर है।

पेड़ पौधे हैं नीचे बिल्डिंग है नीचे केमेस्ट्री है।